यहाँ पे एक शोरूम है यहाँ सूटकेस रखे हुए हैं।

पीले कलर की पूताई है मस्जिद की। जीनाह बहुत सारे बने हुए है उसपे आदमी चढ़ रहे --

यहाँ पे बहुत सारी स्कूटी खड़ी हुए है। उसपे गुब्बारा लगे हुए है।

जल रही है पंखा चल रहे हैं उसमें आदमी एक बैठा हुआ --